यह एक नदी है। नदी का पानी बहुत अच्छा है। इसके सामने एक बड़ा सा जंगल भी दिखाई दे रहा है और आसमान का कलर भी बहुत अच्छा है जो पानी मे दिख रहा है। पानी बहुत अच्छा है साफ दिखाई दे रहा है पानी।

यह देखने में एक मस्जिद जैसा लग रहा है इसमें लाउडस्पीकर भी लगाया गया है और बड़े-बड़े स्तंभ भी हैं जिसे सफ़ेद कलर से पेंट किया गया है इस पूरे मस्जिद को।